टेबल है उसके अलावा एक अलमारी है।

सफ़ेद कार है। सफ़ेद कार पर अ काँच पे लाल कपड़ा बंधा हुआ है।

और सफ़ेद कलर की बस है जिसमें लाइट है और --

बहोत सारे बाइके रखी हुई है।

जिसमे एक पंखा है एक अलमारी है।

गुलाबी कलर की और लाइट हल्की कलर की भी हरी कलर की है।

मैरून पेहेन रखी है और अ सफेद टी-शर्ट पेहेन रखी है। कुछ महिलाओं ने --

जो ऑरेंज कलर के और ब्लू कलर के हैं।

और अ एक और टी.वी. है कैमरा है।

जो पैकिंग करे हए है।

और बाइक है जो वयक्ति खड़ा है उसने सफ़ेद कलर की टी-शर्ट पहन रखी है।

नाव है लाल कलर की पीली कलर की है सामने मंदिर है।

बॉक्स है जिनमे दवाएं है।